सीढ़ियां भी दिखाई दे रही है जो जिम की ओर जाती है।

इमेज में बहुत सारे झंडे भी लगे हुए हैं।

जो अपने मोबाइल से फेडरल बैंक नामक जगह का फोटो ले रहा है।

यह इमेज दो मंजिलों वाले इमारत की है।

यह इमेज एक दुकान में गहने की शोरूम का है।

एक वॉल है जिसमे नीचे रेड कलर का है रेड कलर लगा हुआ है।

यहां पे कुछ लड़के हैं जस्ट लाइक करने की कागार पर हैं।